बैंक ऑफ बड़ौदा।

देखने में भी अच्छा लग रहा है सेपरेट ।

उसके अंदर बहुत सारे घर हैं ।

और यह टोटो जी.के. रिक्शा --

लखीसराय में स्थित है और बगल में एक--

बहुत अच्छे है कम रुपए में इलाज करते हैं ।

और साइड साइड में केला का पेड़ है ।

यह एक होटल है होटल का नाम --

यह एक पार्क है यहाँ पर बच्चे एवं बूढ़े सभी लोग आते हैं ।

बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे --

माँ गायत्री मैरिज हॉल एवं गेस्ट हाउस भी है।

यहाँ पे बहुत सारे आदमी घूमने भी आये हैं ।